मुझे कोई प्रोग्राम दिख रहा है जहां पर बहोत सारे बच्चे आए हुए हैं और बच्चों की मा भी दिख रही है और बहोत सारे कुर्सियां भी दिख रहे हैं बहोत सारे लेडीस दिख रहे--

ये किसी शादी की फोटो लग रही किसी फंक्शन की फोटो है जहां पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र बांध रहा--